यहां पे एक सरकारी इस्कुल --

पीछे योगा का पोस्टर लगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारा टैर रखा हुआ है टैर के पास एक बैग रखा हुआ है।

यहां मार्केट लगा हुआ है।

सेव बेच रहा है और एक आदमी ले रहा है।

और सड़क पे कुछ लोग चल रहे हैं।

वो सजावट बहुत अच्छा किया है जिसमें बैलून रंग बिरंग के लगाया हुआ है।

यहां पे एक मंदिर दिख रहा है।

और सड़क है यहां पे सड़क के बगल मे केला लगा हुआ है और में बड़ा बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है यहां--

ऊपर से करकट दिया हुआ है।

छोटे छोटे पौधा भी लगा हुआ है यहां--

और जो खिड़की है वहां पे पर्दा भी लगाया--

यहाँ पे टाइल्स का दुकान लग रहा है।

यहा का पे फूल का सजावट ऊपर लगा हुआ है।

रंग बिरंग का बोतल में रखा हुआ है।